यह एक बहोत बड़ी जिम और इस जिम में ट्रैक्टर के टायर को पेंटिंग की गई है और पेंटिंग की गई है ब्लैक एंड येलो --

बहुत सारी बाइक्स और साइकिल्स रखी हुए है।